भरी है यहाँ पर कुछ ईटे पड़े है भूरे रंग के आसमान का रंग सफ़ेद और नीला है।

हरे पेड़ - पौधे है यहाँ पर बिजली का काले कलर का तार है बाइक खड़ी है काले रंग की अम्म --

खम्बा है वो पिले रंग का है यहाँ की जमीन --

बनाया है यहाँ पर सफ़ेद रंग की दीवारे भी है यहाँ पर आसमान नीला सफेद है आसपास --

यह आसपास हरे पेड़-पौधे है यहाँ पर दिवारो मे सफ़ेद रंग है और फर्श काली है और--

जैसा की मै देख पा रही हु ये एक पार्क है जो कि हरे--

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ बहोत सारे लोग खड़े हुए है आसपास हरे पेड़ - पौधे हैं।

बकवाड़े लगे है सफ़ेद रंग का पंखा है यहाँ पर लाल रंग की दीवारे है।

सेब अंगूर रखे हुए है यहाँ पर लाल कलर का चदरा है यहाँ पे नीले रंग का चदरा है।

जैसा की मै देख पा रही हूँ यहाँ दो लोग है जो की पेंट कर रहे है छतपे यहाँ पर छत सफ़ेद रंग की है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर उम्म मातारानी का मंदिर है जहाँ जय दुर्गे लिखा हुआ है यहाँ पर पीले रंग की दीवार --

एक स्टूल रखा है जो कि सफ़ेद रंग का है यहाँ पर नीले रंग की कालीन--

--कलर की घास है यहाँ पर सफ़ेद रंग की बिल्डिंग है नीले रंग की बिल्डिंग है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक अस्पताल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा हुआ है जहाँ की बिल्डिंग --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि दो लोग खड़े हुए है एक लोग ने काले कलर का और एक लोग ने सफ़ेद कलर की टी- शर्ट --

ये निल ग्रे कलर की है यहाँ पर प्लस का साइन है ये यहाँ पर--